मॉल के सामने दो डॉल को सजा के रखा है कपड़े पहनकर--

जैसे कि बस और ऑटो रस्ते पे बहोत जादा लोग भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रही है।

बहोत सारा पेड़ भी दिखाई दे रही है एक रास्ता भी दिख रही है।

होटल के अंदर बहोत सारा फैन भी लगा हुआ है।

जिधर से सुसज्जित जिम का प्रतीक होता है।